यहाँ ए एक एल.जी का यह दुकान है और एल.जी कि विभिन्न प्रोडक्ट हैं।

यह सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय का जो आगन है।

उसमें घास उस आ निकला हुआ है और इस विधालय के ठीक पीछे दो बड़े बड़े शाल का पेड़ एक हैं।

सिज़ुकी का एक शोरूम है जहाँ पे सिज़ुकी का दो पहिये का जो वाहन होता है।

यहाँ पे सन्डे और अ सन्डे के दिन में लोग यहाँ पे गोड के सामने प्रे करने एकट्रिट होते हैं।

और अम डेम के बगल में जो दिवार बनाये गये है ढलुवा जो दीवार बनाया गया है पत्थर का--